एक टेबल भी रखा हुआ है उसपे बहुत से समान रखे गए है एक भी है एक--

स्टेज पे चड़ी है और अपना इसके चारो बगल बहोत से खड़े हैं।

ये घर बहुत ही बड़ा है इसमें बहोत से लोग रहते हैं इस घर को बहोत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है इसके बगल में एक घर है वो भी बहोत अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

ऑयल मिलता है यह पेट्रोल पंप का मालिक बहोत ही अच्छा है जो बहोत लोगों की मदद भी करता है यह बहुत ही--

यह एक ब्रिज है इसके चारों बगल बहोत सारे पेड़ पौधे है जो काफी हरे भरे तथा घने--

इसके चारों पर रंग मोहर लगाया गया हैं जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा--

यहां पे बैगन भी रखा गया है कलर बैगन की तरह है जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा--

यह एक कॉलेज है जो बहोत ही लंबा है इसमें बहोत से बच्चे पढ़ने के लिए आते है यहां पे बहोत से बच्चे पढ़ते भी है इसके टीचर बहोत ईमानदार तथा वफादार है जो बच्चों को पढ़ने में--